नीचे लिखा है कायडली गोल्ड मैनी पोको पैंट्स साइड में एक दुकान और दिख रही है।

नीचे एक दरवाजा दिख रहा है।

फर्श पे सफेद रंग की टाइलें लगी हैं।

दिन का समय है बिजली की तारें दिख रही हैं।

एक काले रंग की कार है और जो दूसरी कार है वो सफेद रंग की कार है।

इस फोटो में एक लड़का दिख रहा है।

सामने कुछ बिल्डिंग नजर आ रही हैं घास और और मिट्टी नजर आ रही है फर्श पे।

कुछ यहां बाईकें के दिख रही हैं।

फर्श पे भी सफेद रंग की टाइल है।

यहां पर ये काफी सारी चेयर दिख रही हैं।

एक लड़की है जिसको सम्मानित किया जा रहा है।

जो है कुछ पानी पानी सा है।

हमारे यहां हर प्रकार की किराने का सामान मिलता है।

एक कार है जोकि सफेद रंग की है एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

साइड में लिखा है बिंगो टेढ़े मेढ़े--

सामने लिखा है हुड्डा सिटी पार्क --